और ऊपर दीवाल (दीवार) उजले कलर की है| उस पर एक पोस्टर उजले कलर का लगा है।

काफी बड़ी-सा स्विंमिंगपूल है| और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो कि ग्रीन कलर के है।

उजले कलर का आसमान दिखाया जा रहा है और ब्लु कलर की रेड कलर पिक कलर ग्रीन कलर की पट्टियाँ लगी हुई है।

बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति लाल कलर की शर्ट पहने हुए है बहुत सारे डमी दिखाई रखे दे रहे हैं जो कपड़े पहने हैं।

और इधर एस.बी.आई क्रेडिट कार्ड का बोर्ड लगा हुआ है जो काफी खूबसूरत लग रहा है।